मतलब की आकृतियों से लोगो को परचित कराया जाता है ।

और जिससे हेल्थी रहेगा --

यह एक जिम सेंटर है जिसे नव जवान युवक वगेरा अपना मतलब की बॉडी वोडी बनाने के लिए आते हैं और जिससे मतलब प्रदर्शन दिखाते हैं। इसमें जिम में से जिम यहाँ पर जिम में मशीन वगेरा रहती हैंजाने की भी कही प्रकार की सेटअप बेकअप --

ये स्टेज है स्टेज में किसी का भी ये स्टेज हो सकता है । डांस स्टेज हो सकता है। एक प्रदर्शनकारी भी हो सकता है जिसमे सोंग्स भी बज सकते हैं ।